ये जो बार बार सीट येलो कलर की सीट लगी हाथ लगी चोभी है कुछ है।

आदमी खड़े हैं और जो बेटी है आदमी जो बीच में खड़ा है।

ये जो येल्लो कलर की बस लगेली उधर आजू में एक आदमी खड़ा है ।

गेट लगेले और गेट की जो आदमी वहाँ पे जो आने का डोर है ।

और बाजू में जो और भी मशीन्स लगेले काहे की मशीन्स है।